टाइल्स बिछी है और बिल्डिंग में कांच लगी है खिड़कियों में।

ये एक बड़ा सा पुलिस स्टेशन का गेट है एक पुलिस स्टेशन का गेट सफेद रंग का है इसकी दीवार पर चॉकलेटी और पीला--

रंग का ऑरेंज रखा है और एक आदमी गुलाबी रंग के कपड़े पहना है वो--

रंग की लाइट लगी है और काले रंग के टायर है और चार कुर्सी है काले रंग की--